यह टाटा कंपनी है यह अनेक गाड़ियाँ हैं ये बड़ा बिल्डिंग है।

उ उनके आगे एक फ़ास्ट फ़ूड का दुकान है। स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है। ए.टी.एम. के अंदर --

कुछ व्यक्ति इधर देख रहें हैं दुकान में अनेको टयूबलाइट जल रही है।

उनके भीतर कोई व्यक्ति नहीं है। सोड़ुम में बैलूम है।

यह व्यक्ति सब खड़े हैं वो पाहड़ को तोड़ रहे हैं।

यहाँ खुला मैदान है। यह शाम का टाइम है। कुछ व्यक्ति बैग ले गए हुए हैं। कुछ व्यक्ति ग्राउंड में घूम रहे हैं।

और उम प दस पन्द्रह कड़मचाड़ीयाँ बैठी हुई है। साड़े कड़मचाड़ीयाँ बात कर रही है।

छोटे-छोटे पेड़ हैं। घास का मतलब बकड़ी का शड़ीड़ --

यहाँ बड़े-बड़े खम्बे खड़े हैं यहाँ टेंट --

और यहां व्यक्ति लेटे हुए हैं कुर्सी पर दाढ़ी बनाने वाले अभी नहीं है साइड में बहुत सारे --

कूड़ा एक भी गन्दा नहीं है।